पर एक व्यक्ति एक खम्बे से टिक कर खड़ा हुआ है तथा सामने की ओर एक हेलमेट रखा हुआ है तथा व्यक्ति ने चश्मा लगा रखा है ।

मन्दिर पर लाल सफेद रंग पुता हुआ है पीछे की तरफ बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ के पास में खंबा लगा हुआ है खंबे पर बहोत सारी लाइटें लगी हुई --

होटल के बिल्डिंग बहत बड़े दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर एक बिंडो दिखाई दे रही है। बिंडो इसमें पर्दे लग रहे हैं तथा होटल के अंदर काउंटर में भी लाइटें --